कैबिन में बैठे हैं उनके हर कैबिन के ऊपर पंखा और लाइट का पूरा प्रबंध किया गया है।

यहां पर महिलाएं कुछ समुद्र पान समुद्र के पास इकट्ठी हुई है ये किसी पूजा पाठ के लिए इकट्ठी हुई हैं।

हम यहां पर रेस्टोरेंट में देख रहे हैं कुछ लोग खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं और देख लीजिए कुछ लोगों ने मास्क भी लगा रखा है।

सड़क के किनारे हम ये दीवार देख रहे हैं दीवार के दूसरी तरफ हमको बहुत ही ऊंची बिल्डिंग जो लाइन से लगी है जहां पर छोटे-छोटे कमरे यानी--

कैबिन का रंग ब्लू कलर का रखा गया है और उनकी जो कुर्सियां है वो काले रंग की रखी गई--

सूर्यस्त होने का चित्र है यह हम देख सकते हैं एक छत के आगे से ये चित्र लिया गया है जहां पर सूर्य अस्त होता हुआ नजर आ रहा है।

घर के लोग घर को बहुत सुंदर से सजा रहे हैं और पर्दों का इस्तेमाल करके और फूलों का इस्तेमाल करके सजा रहे हैं घर के हम देख सकते हैं दो मंजिला घर है।

वहां सुपरमार्केट में हमें सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा चाहे वह खाना हो चाहे जो म--

अग्नि भी जो प्रजवलित की गई है जैसे यहां पर हवन किया गया हो और साथ में सामने भगवान के--

पुल बना हुआ है और पुल के नीचे गाड़ियों के आने जाने के लिए पटरियां भी बनी हुई है और काफी विशाल और सही लग रहा है।

लाल हल्का गुलाबी गाढ़ा गुलाबी और फीके गुलाबी रंग के पौधे फूल हमें नजर आ रहे हैं ये गुलाब तो नहीं है।

अध्यापिका के साथ चित्र खिंचवा रहे हैं और सब ने साड़ी पहन रखी है।

हम यहां पर कुछ लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं और ये फादर है जैनी ये ईसाई धर्म से संबंधित है।

ये चर्च के छत की तस्वीर देख रहे हैं हम लोग जहां पर छत के क्रॉस का निशान बना है जो कि ईसाइयों के धर्म का--